इस चित्र में एक बडा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर अम्बा बुक कॉर्नर लिखा हुआ है जिसके नीचे --

जो कि नीचे एक खिड़की बनी हुई है खिड़की के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि खिड़की के अंदर देखता हुआ नजर आ रहा है।

यह चित्र एक जिम का है जहाँ पर बहुत सारी मशीने दिखाई दे रही हैं जो पिले वा काले रंग की है नीचे हरे वा --

यहाँ पर सफेद कलंग का एक बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है जिसके अंदर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।